एहा तो स्कूल जैसे लगत थे बैंगनी आसमानी कलर का पेंट मन करल थे सामने घास दिखत थे अउ गोला-गोला दो कलर से कुछ बनाइन है।

एगो सेल है झै एकदम खाए कर सामान मन रखिन है मिकचर सॉस रसगुल्ला मन दीखत हे।

पार्क नियर दिखत हे इहाँ जमीन में टाइल्स लगिस हे अऊ उहाँ गहवारा करीन हे और फिर वह हरियर -हरियर घास लगाइन हे और बैठे बर कुर्सी हे लाइट भी लागियान हे।